में एक नीले रंग का इ-रिक्शा दिखाई दे रहा है। उसके बगल में एक पीले हरे रंग का ऑटो दिखाई दे रहा है।

ताकि हम अंडे ले सकें एवम

और यह कमरा बहुत रंगीन है।

ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

और इसके सामने बहुत दो बाइकें खड़ी हुई हैं।